यहां पर अ ब पुल बना हुआ है। यहां पर बहोत सारे लोग नहा रहे हैं। यहाँ पे बहोत सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं। यहाँ पे बोहोत सारे लोग हैं। यहां पर बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए --

यह बस स्टॉप की फ़ोटो है। यहां पर बोहोत सारी बसे खडी हुईं हैं। यहां पर बोहोत सारे घर बने हुए हैं। यहां पर बोहोत सारे पेड़-पौधे लग --